एक दुकान है। दुकान में एक आदमी है एक बैठा है।

आदमी जो बेच रहा है मुंह में मास्क लगाया हुआ है।

उसपर लड़की सब रंग बिरंगे कपड़ा पेहनी हुई है डांस कर रही है बैलून सब से सजाया हुआ है वो अच्छा लग रहा है। लड़की लोग अपना मन से सब कुछ कर रही है। बहुत अच्छा से डांस कर रही है।

तो इन भगवान जी का आगे में फोटो है और माला चढ़ा हुआ है। आग रखा हुआ है अगरबत्ती जल रहा है। बहुत अच्छी-अच्छी चीजें सब है इसमें भगवान जी की मूर्ति पे माला चढ़ा है फोटो पर।

यहाँ एक मकान बना हुआ है कुछ मकान के आगे में गाड़ी सब लगी हुए है | मकान बोहोत अच्छा है पीछे में नीला रंग का है और टीबी है पोर्च सब है अच्छा-अच्छा।

एक सड़क किनारे दुकान है दो ठो आदमी है बैग लिए हुआ है।